यह एक हॉस्पिटल है जिसमें एक डॉक्टर है एक मरी है बहुत सारा बेड है एक चेयर है इसमें आदमी सब घूम रहा है।

यहाँ पर पंखा लगा हुआ है बहुत ही अच्छा से सजाया गया घर है मस्त लग रहा है।

बहुत ही हरियाली छाई हुई है पानी बहुत ज्यादा है यहाँ पर एक छोटा सा घर भी है।

यह एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पर बस लगा हुआ है रेलवे पर बस खड़ा हुआ है यह एक ब्रिज है ब्रि --

यहाँ पर एक घर बन रहा है घर के ऊपर दो तीन आदमी बना रहा है घर बहुत ही अच्छा बन रहा है घर पर छर लगा हुआ है।

पेर पौधा दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान है।

जिसमें तीन चार दरवाजा लगा हुआ है नीचे एक हाइड्रोलिक से ऊपर उठाया गया है।

एक आदमी पाइप से कार को धो रहा है।

छोटा पेर पौधा लगा हुआ है इसमें भण्डारा होता है इसमें बॉल में लगा हुआ --

यह एक घर है जिसमें एक बैग रखा हुआ है यह एक बहुत ही --

लगा हुआ है जो देखने में और अच्छा लगता है पोस्टर छपा हुआ है ऊपर आसमान नीला कलर का दिखाई दे रहा है।

का कपड़ा दिखाई दे रहा है नीचे बॉक्स दिखाई दे रहा है।

एक सीरी लगा हुआ है यहाँ पर एक हरा रंग का पेर पौधा दिखाई दे रहा है।

इस पर ग्रेट व्हाईट इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है यह --

कड़ाही दिखाई दे रहा है बेंच लगा हुआ है पानी टंकी --

फूल खरीद रहा है यह बहुत ही बरा दुकान है जिसमें --

बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है यहाँ पर --

बहुत सारा बॉक्स बना हुआ है जिसमें सामान रखा हुआ है दुकान देखने में बहुत ही अच्छा लगता है बाबा --

तकिया रखा हुआ है बहुत ही बॉक्स है जिसमें समान सा रखा हुआ हैं।

आदमी है जो ऐना में दिखाई दे रहा है वह सामान बिक रहा है।

माँ भवानी का मूर्ति लगा हुआ है नीचे बहुत सारा सामान पूजा का रखा हुआ या है।

बॉल बर रहा है यहाँ पर फुकना रखा हुआ है नीचे बहुत ही अच्छा से --

यहाँ पर बहुत ही हरे भरे पेर पौधा दिखाई दे रहा है यह पहारी इलाका है इसमें --

बढ़िया ओ टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान --

अ नीला कलर का दिखाई दे रहा है इधर कु कुछ पेर पौधा है जो सूख गया है यह पेर पौधा बहुत ही --

पेंट किया गया है नीचे एक डोल रखा गया है यहाँ पर एक झोरा रखा गया है।

ओ आदमी एक रिक्शा हांक रहा है जिसमें दो आदमी बैठा हुआ है यहाँ पर बहुत बरा --

लेबर काम कर रहा है इसमें एक लाइट दिखाई दे रहा है यहाँ यह उजला कलर का घर है बगल में टकठा दिखाई दे रहा है ध --

पोल पोल्स लगा हुआ है जिस पर तार लगा हुआ है उधर कर भी बहुत पेड़ पौधा --

यहाँ पर बहुत सारा रंग बिरंग का बॉल लगा गया है पैर पर यह पैर हरा --

बॉडी बहुत है वहाँ पर भी एक आदमी है जो उधर घूमा हुआ है ऊपर एक पंखा लगा गया है एक बॉल लगा गया है।